जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैंलाल और हले हरे कलर का कारपेट बिछा गया है कुछ बच्चे यहां पे खेल रहे हैं।

एक ही पोजीशन में सेम पोजीशन में सब खड़े हुए हैं जिन्होंने सबने लोअर टी-शर्ट ही पहना हुआ है।

वहां पे एक बिल्डिंग बनी हैजहां पे ब्लूबेल स्कूल इंटरनेशनल लिखा हुआ --

बहुत ही अनहाइजेनिक टाइप का पेट्रोल पंप दिख रहा है जहां पे--

अह स्क्रीनशॉट का कुछ दिखाई दे रहा है पास में एक टेबल दिखाई दे रहे--